इ बादल के सीन छै एकर बाद ताज महल जे गोल --

ते ढलैया होइ छे। मिस्री पूरा काम करी रहलो छे। गाड़ी-उड़ी भी लागलो छे। स सामान उमान भी रई छे तर फठी-उठी भी रखलो छे।